यहाँ एक पेट्रोल पंप है यहाँ बहुत सारी गाड़िया लगी हुई है जो लाल कलर की गाड़िया है बहुत सारे आदमियां है हैं शाम ए सुबह दिन का समय है।